सामने में एक इंसान का फोटो लेकर दिखाई दे रहा है रूम के अंदर में ए_टी_एम भी दिखाई मिल रहा है।

सामने में दूसरा का घर का वॉल भी दिखाई दे रहा है।

लकड़ी का एक बेंच भी दिखाई दे रहा है।

बॉर्डर के सामने में नोटिस बोर्ड भी लगा के दिखाई दे रहे हैं।

डैम को पार करके जंगल और पेर भी दिखाई दे रहा है।

सामने दुकान में बहुत सारा शॉपिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

फाउंटेन में लाइट जल के दिखाई दे रहा है।

पिचर में एक रूम दिखाई दे रहा है।

के अंदर में फैन भी दिखाई मिल रहा है ऊपर में लाइट भी जल रहा है।

दुकान के बाहर बहुत सारा भीड़ भी दिखाई दे रहा है।

रास्ता में बहुत सारे पानी पानी भी दिखाई दे रहा है। रास्ता के सामने बहुत सारा साइकिल्स भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक स्टयेर भी देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक लाइट पोल और वायर भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में पिज्जा का रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर मे बहोत सारा टेबल और चेयर भी रखा हुआ है।

इधर भी बहुत सारा फ्लावर भी दिखाई दे रहा है।

का छोटा छोटा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

घर के ऊपर में बहुत सारा कलर पेपर भी लगाया हुआ है।

ऊपर वाल में ए_सी भी लगाके दिखाई दे रहें।

होटल में एक क्यू_आर कोड स्कैनर भी दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर लोग के पीछे पेरेंट्स भी दिखाई रहा है।

दोनों ब्लू कलर का स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

काउंटर में दो डिब्बा भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा बच्चा लोग का लॉन्ग पैंट और पैंट भी दिखाई दे रहा है।